इस पिक्चर में हमें सामने की ओर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के नीचे एक कार भी खड़ी हुई है और कार के सामने एक जीना भी है और--

और सामने की और कुछ मशीनें लगी हुई हैं और पीछे की साइड कुछ पंखे लगे हुए हैं।

जिस पर से एक बंदा पानी भर रहा है और सामने की ओर कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में हमें एक खाली जगह दिखाई दे रही है जिसमें सामने की ओर दो गाड़ी खड़ी है।

और यहां पर दो कार तीन कार भी खड़ी हुई हैं और पीछे की साइड एक कुर्सी भी रखी हुई है।

और ऊपर की साइड रेलिंग बनी हुई है।

इस पिक्चर में हमें एक सड़क नजर आ रही है जिसमें जिसमें सामने की ओर आदमी खड़े हुए हैं और ऊपर--

ऊपर के साइड रेलिंग बनी हुई है और ऊपर की साइड कोका-कोला के रेड कलर के बोर्डस भी लगे हुए है।

ऊपर की साइड आसमान है और सामने की साइड सूरज निकल रहा--